नीचे की और जमीन दिख रही है जिस पर हरा-हरा कछुए जैसी दिख रही है।

ये चित्र एक कार का दिख रहा है जिसके काले कलर के कांच है सफेद रंग की ये कार है।

अंदर की और कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है| काफी सारे फूलों की सजावट--

दो आदमी चेयर्स पर बैठे हुए हैं।

यह चित्र दुकानों का दिख रहा है जो घर के अंदर है| बाहर की और एक कार खड़ी है सफेद रंग की।

ऊपर की और खिड़कियां दिख रही है।